बेंच के सामने दो बिल्डिंग नजर आ रहे हैं और बहुत सारे पेड़ों को शेप दिया हुआ है।

पेट्रोल पम्प के पिछे कि साइड मे कैपिटल टावर ऐसे लिखा हुआ --

कपल चेयर्स लगी हुई है जहां पर पॉपकॉर्न और दूसरी चीजें रखने के लिए सेक्शंस बनाए हुए --

बिल्डिंग के नीचे दो दरवाजे हैं एक दरवाजे के सामने साइकिल पार्क की हुई है ।

नीचे की साइड में लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल ऐसे इंग्लिश में लिखा लिखा हुआ।

और उन पर बाउंड्री कवर कर ली गयी है बाउंड्री के अन्दर से बहुत सारी बिल्डिंग नजर आ रही है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां एक बड़ी सी मूर्ति बनी हुई --

मूर्ती के पीछे एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है।

मूर्ति के आजू -बाजू बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं ।

सारी औरतें उसको गोल फेरा मार रही हैं और उनके आजु बाजू कुछ आदमी और बच्चे नजर आ रहे हैं।

नीचे की साइड में मेंबरशिप ओपन और कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है ।